सारे ये खंडहर जैसी स्थिति में है और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

यह तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा है।

के में एक मेज है। मेज के ऊपर एक सजावट का सजा समान रखा हुआ है।

दीवारें उजले रंग की हैं और इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है।

इस मंदिर में के अंदर एक मूर्ति रखी हुई है मंदिर--

बीच में दो पुतले रखे हुए हैं जो पुतले को भी कपड़ा पहनाया गया हुआ है।

इसमें तीन चार खिड़की दिखी हुई लगी हुई है और अ कुछ तस्वीरे बनी हुई है अ इस--

बॉक्स के अंदर कुछ कुछ पूजा के सामग्री है और सामान है।

इस तस्वीर में एक बूढी औरत एक समान उठाते हुए दिखाई दे रही है।